इस चित्र में बहुत से आदमी और बच्चे और महिला खड़ी हुई हैं।

और इसमें बहुत से आदमी और महिला भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा तालाब है।

उसके पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

और उसके पास एक पेड़ भी लगा हुआ है।

और दीवाल पर एक ए_सी और पंखे और कुछ छत के ऊपर लाइटें जल रही हैं।

एक आदमी के पास काले कलर की टोपी रखी हुई है।

और एक लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

उसके ऊपर कुछ पंखे की पकड़िया भी हैं।

और नीचे की साइड में एक आदमी बैठा हुआ है।

और इधर साइड में एक पीले कलर का पन्ना भी है।

और उसके ऊपर कुछ लाइटे भी जल रही--

और उसके नीचे कुछ पत्तियां हरी भरी लगी हुई हैं।

और इधर साइड में कुछ हरी पत्तियां भी लगी हुई है।